इस स्कूल का कलर सफेद ऑरेंज और गुलाबी है| ये बहुत ही अच्छ लग रहा है| यहा पर बहुत बड़ा मैदान है।

ये किसी साधु बाबाओ की मूर्ति लग रही हैं ये मूर्ति काफी अच्छी लग रही है।

ये क्लास रूम बोहोत ही अच्छे हैं | इस क्लास रूम में सफ़ेद कलर हुआ है | यहाँ पर बोहोत सारे बेंचे रखे हुए हैं | यहाँ पर एक कुर्सी भी है | यहाँ --

इसमें बाहर सफेद कलर का कलर हुआ हुआ है। इसके बाहर पार्क भी है। वो पार्क काफी अच्छा है। यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं।

ये फोटो पहाड़ पर बनी एक गुफा की है। इसमें बहुत सारे लोग घूमने आते हैं। यहां पर बहुत सारे लोग अब भी है।